दृश्य किसी साइकिल की दुकान का है जिसमें बड़े से लेकर छोटे साइकिल नजर आ रहे हैं।

ऊपर की दीवार को सफेद रंग से रंग गया है।

अंदर की दीवार को सफेद रंग से रंगा गया है दीवार में कई सारी पेंटिंग लगी हुई है।

सामने की ओर की दीवार पे सफेद रंग के टाइल्स बनाया गया है ।

सामने की इमारत में कई सारी खिड़कियां नजर आ रही है और सामने की ओर कई सारी गाड़ियां भी चलती हुई वहां नजर आ रही है।

यह दृश्य एक हॉस्पिटल का है जिसमें सामने की ओर एक लोहे की पलंग नजर आ रही है और दीवार का रंग हल्का पीला नजर आ रहा--

ऊपर की हिस्सों में लाइटिंग लगी हुई है और भूरे रंग की सीढ़ियां भी है।

एक व्हीलचेयर भी दिख रहा है।

सामने की गेट को भी सफेद रंग से रंगा गया है।

सामने की और सफेद और नीले गुब्बारे से सजाया गया है सामने की ओर की जमीन को सुरमई रंग से रंगा गया है।

सामने की ओर की दीवार को सफेद रंग से रंगा गया है।

एक नीले रंग का बोर्ड नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक मार्ग का है जिसमें सामने की ओर हरे रंग की घास उगी हुई है।

ऊपर के हिस्सों में कई सारे लाइटें लगी हुई हैं आस पास की दीवार को सफेद और काले रंग से रंगा गया है ।

यह चित्र एक धर्म सम्मेलन का है जीसमें सामने की ओर एक चौड़े से दीवार में एक सुनहरे रंग की मूर्ति खड़ी हुई--

आस पास कई सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं सामने एक छोटा सा घर है जिसकी दीवार को ईट से बनाया गया है।

यह दृश्य एक बाग का है जिसमें सामने की ओर हरे भरे पौधे नजर आ रहे हैं और कुछ लाल गुलाबी फूल भी दिख रहे हैं।